कोई बेच नहीं रहा मछली ले रहे है सब जानी और अ कुछ - कुछ मढ़ा रखा हुआ हैं।

और नीचे में कुछ बिछाया हुआ है जो ब्राउन ब्लू पिंक येलो कलर का है।

यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ सर मैडम लोग फोटो खींचा रहे हैं और व्हाइट कलर का जाकेट पहने हैं।